इस द्रश्य मे हमे एक ए_टी_एम दिखाई दे रहा है तथा ए_टी_एम का शटर बांध दिखाई दे रहा है साइड मे एक-ए दीवार दिखाई देरी तथा सामने एक बाइक खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

दुकान के सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है तथा रोड -रोड भी दिखाई दे रही है कुछ पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं तथा कुछ पोस्टर लगे हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

जहाँ पे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है तथा हमे कुछ फूल लगे हुए भी दिखाई दे रहे हैं खुला आसमान दिखाई दे रहा है।